हमे एक रोड दिखाई दे रही है जोकि एक गेट कि तरफ जा रही है जोकि अभी बंद है उसके उपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर भालुरघाट एयरपोर्ट लिखा हुआ है।

जिसने भी रेड कलर की पगड़ी पहनी हुई हैं एक आदमी खडा है जिसने काले रंग का कुर्ता पहना हैं और एक कैमरामैन भी दिख रहा हैं।

बहुत बड़ा सा हॉल हैं जिसमें कुछ औरते निचे बैठकर सब्जिया काटती हुई दिख रही हैं साइड में कुछ बड़े भगौने रखे हुए हैं।

हमें एक आयल टैंकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं जिसके ऊपर भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ हैं यह नीले और सफ़ेद रंग से पेंट किया गया हैं।

यहा पर एक रेल्वे स्टेशन है जिसमे हमे एक इंजन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर इंडियन रेल्वेज लिखा हुआ है साइड मे बैठने के लिए कुछ बेंचेस बनाई गयी है।

बेड पर एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ है पीछे की दीवार पर दो पेंटिंग्स लगी हुई है जिसमें फ्लावर्स बने है साइड में एक साइड टेबल लगी हुई है उसके ऊपर कुछ बोर्ड लगे हुए है।

जिसे टीन से कवर किया गया हैं। यह टीन सफ़ेद और नीले रंग की हैं और साईड में कुछ बाइके भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने की दीवार पर एक केलिन्डर लटका हुआ हैं जो की पिले और सफ़ेद रंग का हैं उसके ऊपर आंध्रा बैंक लिखा हुआ हैं।